ये कपड़े की दुकान है ये बहोत ही बढिया यहाँ कपड़े वगेरा बिकते हैं। लोग घर से आकर के कपड़े वगेरा खरीदते हैं जो वहाँ पर बढियां कपड़ा मिलता है लोग वहाँ जाते सस्ते और बढियां कपड़ा मिलने के बाद में घर चले आते फिर लोगों को बताते हैं कि यहाँ पर मार्केट में वो दुकान बहोत बढिया --

और भी समाज कल्याण ऑफिस हम गए एक बार हमारे अम्म अम्मा के पेन्सिओनी की फारम कहा हमने कहा लाओ जमा करे हमें तो देखो बड़ा बढियां और सी.ई.ओ. साहब बैठते यहाँ में --